यहाँ पे एक रोड दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे दुकान है और गाड़ी भी है। इसमें दुकान जिसको भी दुकान में कुछ समान खरीदने खरीदना चाहा तो उ खरीद सक यहाँ पे एक टेम्पू है जिसमें एक अ बड़ा मशीन है और मशीन में बहोत सारे सामान बनाए जा --

यह टिकट काटने का टाइम है और पाँच से लेकर --

और इसी मे हम लोग रोपा लगा रो --

लगता ऐसा लगता है जैसे हम लोग सत्संग में जाते है तो--

दू आदमी रहते हैं और --

ये दिखाई दे रह है और घर जो है काफी तरह से सजाये हैं।

उसके उसके साइड में एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिस --

हवाईजहाज में चहड़ के कही घूमने के लिए जाते है।

एक काले आदमी को गोरा बनाने में --

ये बहुत सारे लोग जो है ये देखने के लिए आये हैं।

में बहुत सारे समाने --

गाड़ी चले आता है तो उस --

यहाँ पे एक रोड दिखाई देता है जिसमे बहु --

वे भी आएंगे और --

यहां इम्म पढ़-लिख के अच्छा --